नमस्कार दोस्तों bash में basics of functions पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
कुछ उदाहरणों की सहायता से
function का महत्व
function को घोषित करना
function को कॉल करना
फंक्शन का फ्लो
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपको bash में shell scripting का ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं तो कृपया संबंधित tutorials के लिए दिखाई गई website पर जाएँ
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ऊबंटु लिनक्स 1204 operating system
अभी तक हम gnu bash version 4110 का उपयोग कर रहे थे
अब से हम gnu bash version 42 का उपयोग करेंगे
कृपया ध्यान दें अभ्यास के लिए gnu bash version 4 या उपरोक्त की सलाह दी जाती है
अब देखते हैं कि function क्या है और उसके उपयोग क्या हैं
function commands का संग्रह या एक algorithm है
यह एक विशिष्ट कार्य करने के लिए लक्षित है
इसका उपयोग अलगअलग कार्यों में एक जटिल program को break के लिए किया जाता है
यह पूरी script की पठनीयता और आसानी से उपयोग में सुधार करता है
यहाँ function घोषित करने के लिए दो syntaxes हैं
पहला सिंटेक्स हैः
function space function underscore name
curly brackets में
निष्पादित की जाने वाली commands
दूसरा syntax हैः
function underscore name open and close round brackets
curly brackets में
निष्पादित की जाने वाली commands
फंक्शन कॉल
फंक्शन प्रोग्राम में कहीं भी कॉल हो सकता है
function name type करें जहाँ आप इसे कॉल करना चाहते हैं
function नेम के लिए syntax यह स्वयं है
इसे साधारण उदाहरणों की सहायता से समझते हैं
मैंने पहले ही file function sh में code टाइप किया है
यह shebang line है
function function नेम के बाद कीवर्ड function द्वारा घोषित होता है
यहाँ function नेम machine है
curly brackets के अंदर के कंटेंट को function definition कहते हैं
मैंने कई मशीनों के विवरण को प्रदर्शित किया हैं जैसे
uname hyphen a machine के बारे में जानकारी देता है
w hyphen h system पर logged यूजर दर्शाता है
uptime समय दर्शाता है जबसे machine on थी
free memory status दर्शाता है
df hyphen h filesystem status देता है
main program यहाँ से शुरू होता है
हम message beginning of main program प्रदर्शित करते हैं
यहाँ machine function कॉल है
फिर हम message end of main program प्रदर्शित करते हैं
अब workflow समझते हैं
जब bash interpreter function definition पर जाता है यह साधारणतः function को scans करता है
function कॉल होता है जब इसका name script के अंदर दिखाई देता है
जब interpreter function नेम reads करता है यह function definition को निष्पादित करता है
interpreter function नेम को command के रूप में उपयोग करता है
कृपया याद रखें कि हमें function को कॉल करने से पहले परिभाषित करना है
अब terminal पर जाएँ इस code file को निष्पादन योग्य बनाने के लिए
type करें: chmod space plus x space function dot sh
enter दबाएँ
type करें dot slash function dot sh
enter दबाएँ
output जो कि मेरे system की machine का विवरण है terminal पर देखा जाता है
कृपया ध्यान देंः output भिन्न system के लिए भिन्न होंगे
यह हमें tutorial के अंत में लाता है
अपनी slides पर वापस आएँ
संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा
एक उदाहरण की सहायता से
function का महत्व
function को घोषित करना function कॉल
फंक्शन का वर्क फ्लो
नियत कार्य के रूप में दो functions के साथ program लिखें
पहला function मानव पठनीय form में diskspace प्रदर्शित करना चाहिए hint: df hyphen h
दूसरा function मानव पठनीय form में filesystem प्रदर्शित करना चाहिए hint: du hyphen h
नीचे दिए गये link पर उपलब्ध video देखें
यह spoken tutorial को सारांशित करता है
अच्छी bandwidth न मिलने पर आप इसे download करके भी देख सकते हैं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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए contact @spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें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
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद